पल्स और एक सनग्लास भी दिख रहा है। वो लड़का खुद की सेल्फी ले रहा है।

ब्लेजर दिख रहा है। बहोत सारा ब्लेजर है कलर --

आल्हा की पूजा कर रहे हैं सब। माथे पे टोपी पहने हुए हैं।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है। बहोत सुंदर है रूम। पूरा नीट एंड क्लीन है।

अं-ट्रे दिख रहा है जिसके ऊपर चिकेन ले --

दुकान के अंदर बहोत सारे लोग हैं। बाहर बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं।

ये घर पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है।

दोनो ही एक स्टेप में नाच रहे हैं।